इस साइड मे जो बिल्डिंग है उसमे बहुत सारे विंडोज जैसे दिख रहे है।

वहां पे कुछ व्हॅसेलीन का चित्र दिखाई दे रहा है।

और एक कलर मे दिख रहे कुछ खाली जगह भी है।

भीड है और सब लोग जेन्टस दिखाई दे रहा है और सामने मे लाईट जल रहा है यहा पे --

बना हुआ छक्का जैसा जो कलर कलर का है रेड है पीला है।

सामने में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

सामने में एक कुछ पीछे में पर्दा लगा हुआ है।